बस एक बड़ा सा पार्क है आ ओ पार्क है यहाँ बस बॉडी बनाने के वाले भी है बॉडी बनाने के वाले भी है।